इसमें की बहुत सारी काले रंग की कुर्सीया रखी।

इसमें एक काले कलर की बड़ी कुर्सी रखी है।

यहां पर एक एल_सी_डी भी लगी हुई--

यहां पर एक पोस्टर में एक लड़की का फोटो छपा हुआ है।

यहां पर एक घर का दृश्य दिखाई दे रहा--

यहां पर बहुत सारी लाइटें भी लगाई गई है।

के बाहर बोर्ड पर सैमसंग फाइनेंस प्लस लिखा हुआ है।

मुझे यहां पर एक छोटे से होटल का दृश्य दिखाई दे रहा है।

एक हरे रंग का डस्टबिन रखा हुआ है।

मुझे यहां पर एक चाय की दुकान का दृश्य दिखाई दे--

इसमें की बहुत सारे कप रखे हुए--

इसके बोर्ड पर तंदूरी चाय स्पेलिस स्पेशलिस्ट लिखा हुआ है।

और यहां पर योगा के लिए चटाई भी पड़ी हुई है।

मुझे यहां पर एक पार्क का दृश्य दिखाई दे रहा है।

सारा हरा घास बिछाया गया है।

यहां पर लाल रंग की कुर्सी भी रखी है।

हरे रंग की एक छत भी लगी हुई है।

हरे रंग के डब्बे भी रखे हुए हैं।

एक आदमी फोन पर बात कर रहा है और दूसरा आदमी हाथ पे हाथ रखे हुए बैठा हुआ है।

मुझे यहाँ पर एक रेस्टोरेंट का दृश्य दिखाई दे रहा है।

इसके ऊपर लीले नीले रंग का शीशा लगा हुआ है।

इसके बाहर बहुत सारे आदमी इधर उधर घूम रहे हैं।

मेज भी रखी हुई है।

नीले रंग का आसमान दिख रहा है।

गाड़ी खड़ी हुई है।

एक आदमी भी खड़ा हुआ है जोकि हरे रंग की शर्ट पहन रखा--

कमरा दिख रहा है जिसमें कि बहुत सारी मशीनें खड़ी हुई हैं।

लाइट भी लगी हुई है।

जिसमें कि बहुत सारा पानी भरा हुआ है।

यहां पर एक फैक्ट्री का दृश्य दिख--

यहां पर एक कांटे पर एक बोरी लटकी है जिसमें कि बहुत सारा सामान लदा हुआ--

बाहर एक साइकिल भी खड़ी हुई--

मुझे यहां पर एक मैरिज होम का दृश्य दिख रहा है जिसमें की बहुत सारी लाइटे लगाई गई है।

इसमें की बहोत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

मुझे यहां पर एक कमरा दिखाई दे रहा है जिसमे कि एक गाय खड़ी हुई है।

यहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और औरतें भी।

पर रोड पर एक पेड़ भी लगा है जो कि हरे रंग का है।

और दीवारों पर बहुत सारी सजावटे की गई है।

और बहोत सारी लाइटें भी लगाई गई हैं।